अ-ओर उसमे लाइट लगी हुई है और ग्रीन-ग्रीन कलर पुता हुआ है और मसाज जेक बना हुआ है बहुत सारे उसमे --

एक बड़ेक हॉल बना हुआ है जैसा उसमें उ एक जो टेबल रखी हुई है उसपे अ हर कपड़ा बिछा हुआ है बहोत तीन-चार किताब रखी हुई है उ चार सर बेठे हैं बाइट ड्रेस पेहने ।

उपर आसमान दिख रहा है और उस पर पहाड़ी दिख रही है बहुत हरा हरी-हरी पहाड़ी दिख रही है ब्रिज टाईप बना हुवा है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है एक लोग खड़ा हुआ है तीन साइड लगा हुआ हैं उसका गाड़ी कारखाना बना हुआ है बहुत सी बैटरी लगी हुई हैं ।

बहुत सी दुकान लगी हुई हैं। इधर मार्केट बना हुआ है बहुत से लोग खड़े हुए हैं अ तीन चार दुकान बनी हुई हैं लड़का पीली शर्ट पहने खड़ा है बहुत सी बाइक खड़ी हुई हैं स्कूटी खड़ी हुई है ऑटो खड़ा हुआ है।

अ वाइट कलर का हॉल बना हुआ है उसमें बड़ी-बड़ी मशीन लगी हुई हैं कुछ मशीन में कुछ कर रहे हैं। तार ऊपर नीचे कर रहे हैं।

ए-ए लड़का मेडिकल मेडिकल बना मेडिकल बना है उसमे कमरे लगे हैं घड़ी लगी हुई हैं लाइट जल रहा है फैन लग हुआ है बहुत सी दवाई रखी हुई हैं एक लड़का मेडिकल बैठा हुआ है।

पीली शर्ट और ब्लैक पेन्ट छोटा सा बच्चा उसमें खड़ा हुआ है उस पेड़ के ऊपर।